इस इमेज में हमे दिखाई दे रहा है एक बिजली का वो जो डी_पी वाला खंभा होता है वो डी_पी रखी हुई है खंभा हैउसके साइड मे एक और खंभा है।

इस इमेज मे हमें एक दिवाल दिखाई दे रही है एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें योगा क्लास चल रही है यहा पर बहुत सारी--

और एक लड़का जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने बैग टाँग रखा है ब्लैक कलर का और इसके पीछे एक बूढा सा व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर --

साई बिल्कुल सामने एक विंडो दिखाई दे रही है विंडो खुली हुई है और एक आदमी खड़ा हुआ है जो आ रहा है जिम साइड बिल्कुल बाहर से अंदर की ओर आता हुआ दिख --